यहां पास तो बहोत अच्छा है खाना खाने के लिए खाना खाने के लिए भी बहोत बेवस्था के साथ है बॉटल भी है और मोबाइल भी है किसके और यहा पास तो बैठेने के लिए कुर्सी भी है यहां पास बहोत अच्छा है।

यहाँ बादल भी बहुत अच्छा दिखत हे अउ बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनीस हावे मस्त दिखत हे।

बाहर ले तो एतना सुंदर दिखत हे त अंदर ह अउ केतना सुंदर दिखत होही बहुत सुंदर दिखत हे बिल्डिंग ह--

--कितना अच्छा हावे बहुत सुंदर दिखत थे तितली भी हे फुल वगैरा सब कुछ बनीस है मंदिर टाइप हावे ए जगह ह अउ पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिखाई हे लेकिन जंगल टाईप लागत हावय एहा तो भी से बहुत अच्छा दिखत थे।

ये होटल ए लेकिन होटल जइसे दिखत नइ हे बहुत सुंदर दिखत हे एहा।

इतना सुन्दर-सुन्दर पैड़-पौधा हवे बहोत अच्छा गेट वग़ैरा भी दिखत हवे।

यह बस स्टॉप है जो बहुत सारा बस खडिस हवै बहुत पेड़ पौधे भी हे ।

भारतीय स्टेट बैंक जो हमर ला वेट करे ले परते वेट करे ले परथे लेकिन हमर--

इहा ल गायक मन गाए से पहिली आथे अपन अअअ अवाज ल अच्छा से बनाथे अउ तब अच्छा से बना लेथे --

गाड़ी एजेंसी है जो इहा ला गाड़ी साफ करवाए ले आथे और कही भी खरोच अगर आ पड़े रथे --